आदमी एक मोबाइल से बात कर रहा है।

इलेक्ट्रिक रिक्शा को एक आदमी पकड़े हुए हैं।

एक आदमी माइक के पास खड़ा हुआ है।

बिल्डिंग में लाइट लगी हुई है छोटी-बड़ी लाइट लगी हुई है।

यह एक पहाड़ी इलाका है।

यहां पे दूर तक छोटा-छोटा घर दिख रहा है।

यह एक अपार्टमेंट है।

अपार्टमेंट में बहुत सारे बोर्ड लगा हुआ है।

उसके बगल से बिजली का तार गुजरा है।

यह नदी का जैसा दिख रहा है पता नहीं समुद्र है क्या है आकाश रंग बिरंगा दिख रहा है।

लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं।

कुछ लड़के नहीं एक ही लड़के दिख रहे है लेकिन जिम का सामान तो दिख रहा है।

कुछ पेड़ हैं पौधे हैं।

इसमें नीला कलर का बेट है।

उजला कलर्स का पता नहीं क्या है पेपर का है लाल कलर का भी है पेपर का ही बना हुआ है हरा कलर का भी है।

यह कोई अंग्रेजी दवाखाना है यह मेडिसिन है।

एक अच्छी बिल्डिंग है बिल्डिंग में शीशा लगा हुआ है।

सीढ़ी के पास एक आदमी बैठा हुआ है।

माॅल में बहुत सारे सामान दिख रहे हैं सामान में जैसे कपड़े हैं।

इस वाद्य अंतरिक को क्या कहा जाता है यह तो हमें मालूम नहीं है।

घर की खिड़कियां दिख रहा है।

अब पता नहीं होटल है क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है।

एचपी का पेट्रोल पंप दिख रहा है।

गार्डन हरा भरा दिख रहा है।

उसमें एक कछुआ दिख रहा है।

या कॉलेज है ये तो दिखाई नहीं दे रहा है।

कुछ जेंस हैं जो लाइन में खड़े हैं।

रैग पर कपड़े सजा हुआ है।

पता नहीं मूर्तियां रखा हुआ है क्या है रखा हुआ।

यहां पे कुछ भीड़ लगा हुआ है।

हमको लग रहा है कि यह छट का व्रत हो रहा है।

महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है।